ग्रीन कलर का पूरा सेट-अप दिया हुआ है कुछ बच्‍चे पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहा आसमान में दिख रहा है बहुत सारे घर बने हुए हैं एक मूर्ति रखी है काली कलर की चारों तरफ से पैक है।